और पंखे भी चले हुए हैं और सामने बहुत सारे टेबल हैं उसके ऊपर कंप्यूटर भी है और बहुत सारी किताबें भी रखी हुई हैं।

और बहुत सारे पीले कलर की मालाओं से भी सजाया हुआ है यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ भी है और दो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं।

गाड़ी के ऊपर हेलमेट भी रखे हुए हैं उसके नीचे एक छोटी सी नदी हैं।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

वह पे भी बहुत सारे कपड़े हैं ऊपर की तरफ एक पंखा भी है जो की सफेद कलर का है।

यह एक गार्डन है इस गार्डन मे निचे कि और बहुत सारी घास भी लगी हुई है और बहुत सारे अलग अलग तरह के लाल और --

गोभी भी है अनानास भी है।

यहाँ पर एक ग्राउंड है इस ग्राउंड के ऊपर एक साइकिल खड़ी हुई है।

और आजु बाजु में भी बहुत सारे लोग है और ग्राउंड के आजु बाजु में--

यहाँ पे एक आदमी है उसने अपने सिर पर एक पीले कलर की टोपी पहन के रखी हुई है और उसके हाथ में एक स्क्रू भी है सामने --

और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे उस नदी में खड़े हुए है नदी के आजु-बाजु में बहुत सारे पेड़ भी है और ऊपर की तरफ सफ़ेद आसमान भी है।